और सामने बहुत अच्छी हरि घास आ रही है।

पारले जी के बिस्कुट बटर बाइट के बिस्कुट मट्ठी और भुजिया नमकीन टंगी हुई दिखाई दे रही है।

तीन पटरी दिख रही है और चौथी पटरी पर ट्रेन खड़ी है।

इस तस्वीर में हमें बहुत सारी कारें खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

कांच का बना हुआ है और इसके बराबर में हमें पौधे नजर आ रहे हैं।

जिस पर लिखा है वेलकम टू टूरिज्म कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र औरंगाबाद ।

और इसके सामने एक घर दिखाई दे रहा है।

और इसके बराबर में एस_डब्लू सिंह कार वॉश लिखा हुआ है और एक काले कलर की कुर्सी रखी है।

जो कि उनके नीचे रखी हुई हैं और इस और इस बरामदे में बहोत सारे पिलर लगे हुए है और छत पर पंखे लटके हुए है।

इस चित्र में हमें एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि ग्रे कलर के कपड़े पहना हुआ है।

इस तस्वीर में हमें गार्डन दिखाई दे रहा है जिसके सामने एक बहुत बड़ा घर है।

इस तस्वीर में हमें एक रोड दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें शोरूम दिखाई दे रहा है।

एक शटर लगा हुआ है और एक शीशा लगा हुआ है।

और उसके चारों तरफ बहुत अच्छी घास--

और इसमें खंभा खड़ा है जिस पर तार खिंचा हुआ है।

उसकी जमीन पर भी छोटी छोटी हरि हरि घास आ रखी है और उसके बीच में कुछ सामान रखा हुआ है।

जो कि बहुत ऊंची है और बल्लियों के सामने एक बाइक खड़ी हुई है।

और इसके एक हाथ में मोबाइल है और ये जिम इस जिम में बोहोत अच्छा अच्छा जिम का सामान --

और बहोत सारे आदमी खड़े हैं और इसके बराबर में बहोत बड़ा ग्राउंड है जो मिट्टी का है और उसपे चुना गिरा हुआ है।

और इसके सामने हमें एक बिल हमें बिल्डिंगे दिखाई दे रही है।

का नक्शा बना है और इसके सामने एक मेज रखी है जिसपे बहुत सारी किताबें रखी है।

और इसमें एक सामने आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जिसने ब्लू कलर की टी_शर्ट पहनी हुई है।

और उसके हाथ में एक मोबाइल है और उसने काले कलर का लोअर पहना हुआ है।